यहां की महिलाये अ सेलिब्रेट कर रही है।

प्राइवेट या प्राइवेट स्कूल तो नहीं लग रहा है गवर्नमेंट स्कूल लग रहा है।

ये कोई अपार्टमेंट है बड़ा सा किसी मेन एरिया में।

एंट्री गेट दिखाई दे रहा है सामने से और लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ पोस्टर है।

मेरे को यहां पे एक मैंन गेट दिखा रहा है और साइड में दो गेट दिख रहा है।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

बालकनी नहीं है बट विंडोज अ साइड व्यू में बोहोत ज्यादा है।

और फ्लैग होस्टिंग के लिए एक छोटा सा निचे तिरंगा कलर का प्लेटफार्म भी बनाया गया है।

कोई मंदिर है जिसके चारो तरफ से अ लाइट्स की लड़िया गई हुई है और नीचे बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई हैं ।

ये एक गाय का बच्चा है। जो की अ अपना भोजन खा रहा है। भूसा खा रहा है। हरा-हरा --

बोहोत सारे लोग यहां पे अपना-अपना काम कर रहे है। कुछ गाड़िया धो रहे है। कुछ कपड़े धो रहे है। कुछ-कुछ कर रहे है।

दुःख की बात जो दिख रहा है मुझे वो सारी मछलियाँ मरी हुई है। एक लेडीज है जो शॉपकीपर है। इस मछली की दुकान --

और पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं हरियाली भरी हुई है।

एक पोल दिखाई दे रहा है बिजली का पोल जिसके थ्रू अ तारे गई है बिजली की।

अ इवनिंग का टाइम है क्योंकि सूरज ढल चूका है पूरे तरीके से इस फोटो में।

अ कहते है कि किसी प्रोग्राम के लिए एक कोई साधु संत बाबा है जो इन सभी को एड्रेस कर रहे है।

एक एंट्री गेट है एंटीक एडवांस स्ट्रक्चर के साथ और कुछ पेड़ है।

और बहुत सारे लोग धुप में अ अपने बच्चो का वेट कर रहें हैं।